फूल भी मौजूद है और कुछ चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं।

ये पेड़ अ सरमन एट बनारस वाला है जो कि --

खिड़कियां ऊपर सफेद रंग किया हुआ है लोहे की तारे लगी हुईं है।

चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई है एक आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुए सीढ़ियों पर चल रहा है।

नीचे भूमि पर पीले और काले रंग ग्रे रंग के टायर्स लगे हुए हैं।

नील और सफेद रंग का है जो की बहोत ही गाड़े --

करीम रंग किया हुआ है छत पर बहुत ही सुन्दर --

मेदान में बहोत सारे महिला बच्चे बूढ़े --

वहां खड़ी है चारों तरफ पुरुष हैं जिन्होंने हाथ में ढोलक तानपुरे --

बोंडरी बनाई हुयीं है उसके चारों तरफ हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है।